जोकि भाईट बोर्ड पर पढ़ाते है। इसमें एक बिजली बोर्ड लगा है तथा बलब भी जल रहे हैं।

यह एक रोड है जोकि एक चौक है जिसपर लिखा है शहीद भगत सिंह चौक रोड से --

मिट्टी की भरी हुई बोरी रखी हैं जोकि किनारे-किनारे लग रही हैं।